ऑफिस में ले हम्म टी_वी टाइप लगे है कुर्ची है फ्रिज है और पीछे मैं हम्म --

अं और इधर जैसे प्लेटफार्म नंबर पे जैसे रुकी हुई है वो--

और उधर अंदर में जैसे ये ईयर फोन वगैरह--